यहाँ पर पानी की थोड़ी रेत दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक खेत है जहाँ पर एक बकरी बेठी हुई दिखाई दे रही है उस बकरी की पुंछ एए दिखाई दे रही है उस बकरी के कान दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर रेल का पाता दिखाई दे रहा है इस रेल के पाते पर से एक ट्रेन जाते हुआ दिखाई दे रही है यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर --

नरब्दाजी के सामने कुछ पहाड़ सा नजर आ रहा है जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक टीन शेट लगा हुआ दिखाई दे रहा जिसमें कुछ ऐं दुकानें लगी हुई दिखाई दे रही कुछ लोग दुकानों के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

के मौम में मौक में माइकस लगाए माक्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर उन भगवान के सामने फूल लग रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिन फूलों मे लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं स्टील की रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही दुकान मे रैके बनी हुई हैं इनमे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ --

पर तेल की कुप्पी रखी हुई दिखाई दे रहीं है यह दुकान एक किराने की दिखाई दै रही है यहाँ।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान में बहोत सारी सामान की पैकेट टंगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मंदिर पीछे बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी गेट एक खुला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दीखाई दे रहा --

बाइक खड़ी हुई दीखाई दे रही है एक लड़का बाइक से जाते हुए दीखाई दे रहा है पीछे मे कुछ पेड़ लगे हुए दीखाई दे रहे हैं बाजू मे कुछ पोस्टर लगे हुए दीखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है पानी के ऊपर कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बीच मे कुछ पत्थर पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस पानी मे थोड़ी चोई भी दिखाई दे रही है।